यहाँ पर थिएटर की एंट्री और एग्जिट के लिए गेट बने हुए है। यहाँ एक लोहे के डस्ट्बिन भी रखे हुए है।

मस्जिद के साइड मे और भी कुछ बिल्डिंग और दुकाने दिख रही है रोड पर काफी सारी गड़िया चलती हुई दिख रही है।

जो की एक थिएटर की है यहा पर लोगो के बैठन के लिए कुर्सियां बनी हुई है जिन पे नंबर भी लिखा है सीलिंग पर लाइट और फैन भी दिख रहे है।

जिसके सारे लाइट्स अभी ऑन है। यहाँ पर लोगो के बैठने के लिए चेअर्स बनी हुई है और काफी सारे लोग भी दिखाई दे रहे।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

यहा हमारे सामने स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही है।

जो एक मस्जिद की है इस मस्जिद के अंदर व्हाइट कलर का पेंट हुआ है दीवार पर कई दुआ लिखी हुई है यहा पर एक घड़ी भी दिख रही है।

मस्जिद के बगल मे और भी कई बिल्डिंगे बनी हुई है यहा पर लाईट भी दिख रही--

यहा पर लोगो के बैठने के लिए चेयर्स बनी हुई है और सीलिंग पर लाईट जल रही है। एक बड़ी सी स्क्रीन भी दिख रही--